रंग बिरंगे कई तरह के फूल सजाए गए --

यह एक घंटा घर है जिसमें बहोत सारे छोटे बड़े घास निकाल--

घर के ऊपर एक बैनर लगा हुआ--

सभी रैक में कुछ सामान रखे गए हैं।

सारे लाइट्स जल रहे हैं कई पंखे भी लगे हुए --

वॉल में कुछ कपड़े टंगे--

बैनर के ऊपर उसमें सफेद अक्षरों में अंग्रेजी में उस दुकान का नाम लिखा हुआ है।

इसका कलर नीले रंग का--